मुझे एक पुरानी हवेली दिखाई दे रही है और हवेली के अंदर--

ये पंखे दिखाई दे रहीं हैं और स्विच भी दिखाई दे रहीं हैं और यह --

मुझे एक दो बिल्डिंग दिखाई दे रहे है।

मुझे एक बड़ा सा गार्डन दिखाई दे रहा है और इस गार्डन में एक गिट्टी का ढेर दिखाई दे रहा है।